उसमे अंदर में वैशाली भी लिखा हुआ है। इसके बगल में एक मकान दिखाई दे रहा है और गाछ वृक्ष भी है।

उसके बीच मे हमे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है ऐसे लग रहा है की कोई चीज़ का मेला है |